सफेद शर्ट नीली पैंट पहने एक हुए आदमी --

काली रंग की ए.टी.एम. मशीन जिसकी स्‍क्रीन नीले रंग की जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ --

ये सब कुछ चित्र बनाते हुए।

एक डॉग का पोस्‍टर लगा हुआ तथा दो काले रंग की कुर्सियां तथा एक --